यहां पर बहुत सारे रैक भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दे रहे हैं यहां पर एक बिल्डिंग भी दिखाई--